यह गाड़ी किसी व्यक्ति की हो सकती है।

यह एक कैंटीन है लाये है।

यहाँ पर बहुत से लोग सम्पुटर पे शाम सलते हैं।

यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे झूला झूल जूल रहे हैं।

ये ये शादी यह शादी में --

यह एक खाली फील्ड है।

यहाँ पर कॉपी किताबें पेन मिलती हैं।